फोटो है जिसमें कुछ बच्चे हाथ जोड़कर--

आटे के कट्टे रखे हुए हैं यहां पर हमें--

यह देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

दे रही है और कुछ सामान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।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

रखा हुआ दिखाइए दे रहा है यहां पर हमें।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

यहां पर बहुत से हरे भरे सुंदर से--